कि दिख रही है वहाँ पे हमें बहुत से अलग -अलग बिल्डिंग दिख रही हैं।

यह इमेज हमें एक पेट्रोल पंप दिखाया जा रहा है जो की बहोत बड़ा है और पेट्रोल पंप के एक साइड में दो पिलर बने हुए हैं।

यह इमेज में हमें एक गार्डन दिखाया जा रहा है जिसके अंदर टाइल्स लगी हुई है वहां पे हमें टाईल्स के ऊपर पीला और--

यहाँ पे हमे एक कपड़ो की दुकान दिख रही है जिसमे हमे बहोत से कपड़े दिखाई दे रहे है जो कि बच्चो के और लेडीजो के दिख रहे हैं वहाँ पे बच्चों के जीन्स टीशर्ट मिल रहे हैं।

अंदर टाइल्स के ऊपर बहुत- सी घास लगी हुई दिख रही है मंदिर के राइट साइड में हमें बहुत -सी जालियाँ भी लगी --